लाल टाइप के दिखाई दे रहा है नही नारंगी टाइप का जो बॉर्डर है ओ दिखाई दे रहा है जिसमें दो तरह दो तरह का नारंगी कलर का बॉर्डर है।

और इस तस्वीर मुझे कई सारी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स भी नजर आ रही है।

इस लाइब्रेरी में अपना अलग अलग एक केबिन बनाया गया है यहां पे अपनी अपनी लाइटें ऑफ है क्यों कि यहां पे लोग अपने अपने डेस्क की लाइटें जला के--

एक प्लेट में मैगी रखी हुई है और एक प्लेट में सूप रखी हुई है।

इस तस्वीर से मुझे यह पता चलता है कि यह तस्वीर जो है एक बड़े से ग्राउंड की है जहां पर कि एक क्रिकेट का मैच चल रहा है और यह समय जो है दिन की है।

यानी कि ये राम भरत जी की गुफ़ा है यहां पर मुझे कई सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे दिन का समय दिखाई दे रहा है और यहां पे मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है जिसके आजू बाजू एक बाल छोटी छोटी बालू रखी हुई है।

यहां पर मुझे एक एक दो आदमी भी नजर आ रहे है। यहां पर डेस्क टेबुल टेबल भी रखा हुआ है और यहां पर दो काली रंग की दो दो चेयर रखी हुई है।

यहां पे हरे रंग का कारपेट बिछाया हुआ है यहां पे टाइल्स भी लगा हुआ है।